सही है यह रोड काफी सुंदर दिख रही है यह रोड पर बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पर बगल में एक गैरेज भी दिख रहा है जो का जो काफी ऊपर से टीने की शेड लगा हुआ है।

जा रही हैं इस सड़क के किनारे कुछ दुकानें नजर आ रही हैं इन दुकानों में दुकानों मे कुछ अअ सामान वगैरा मिलते हैं।

इसके ऊपर कुछ बोर्ड भी लगे हुए हैं जहाँ पर लगे हुए हैं आगे लगे हुए दिख रहे हैं जो प्राइस के लगाए गए हैं जो बहुत सुंदर लग रहे नज़र आ रहे हैं।

खुला मैदान नज़र आ रहा है यह मैदान काफी सुंदर लग रहा है यहाँ मैदान के सामने एक एक सिनेमा हॉल नज़र आ रहा है।